फेस मास्क लगाने से हमारा चेहरा निखर आता है। और स्किन अच्छी हो जाती है तथा धूल मिट्टी के कण हमारे चेहरे से बहार निकल आते हैं।

यह एक कपड़ों की दुकान है। यहाँ पर ढेर सारे कपड़े मिलते हैं। शर्ट पेंट तथा लोअर टी-शर्ट ये सभी मिलते हैं यहाँ पे।

यह एक बैंक का ऑफिस है। इस बैंक का नाम बैंक ऑफ बडोदा है।

यहाँ पर जिम की बोहोत सारी प्लेटें रखी हुई हैं। अलग अलग वजन की रखी हुइ हैं।